ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं।

इसके बाजू में एक लोहे की सीट डली दिखाई दे रही है।

जिसमें लोहे के जंगले लगे हुए हैं|